कि एक दीवाल दिखाई दे रही है और एक रेड कलर का कवर्ड भी दिखाई दे रहा है।

र की दीवार दिखाई दे रही है जिस पर कुछ तस्वीरे लगी हुई है पिंक और वाइट कलर का एक पर्दा भी दिखाई दे रहा हैं।

कलर के दो घर दिखाई दे रहे हैं और दो गेट भी दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्लू कलर के हैं। एक खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं। एक चेन मशीन दिखाई दे रही है जो कि ऑरेंज और ब्लैक कलर की है।

कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पास ही पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं जो कि व्हाइट कलर की हैं।

र की दो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं मूर्तियों के गले में पीले फूलों की माला भी दिखाई दे रही हैं साइड में कुछ फूल भी रखे हुए हैं।